मत इस पे दूल्हा दुल्हन नहीं बैठे हुए है मतलब ब्राइड्स नहीं बैठ ब्राइड और उसका ग्रूम नहीं बैठे हुए --

सारी शादी भी कितनी बढ़िया होगी मतलब पहले ऊपर से देखके हम बता सकते हैं शादी कितनी बढ़िया होगी।

अच्छा ये तो एक देख ज्वेलरी शॉप है और इसके अंदर हमें दो लॉकर दिखाई दे रहे हैं चेयर दिखाई दे रही है और ऊपर फैन है मतलब ये पूरा वेल डिफाइंड एक जो प्लेस लग रहा है हमें।

लोग तो नहीं कह सकते प्लेयर्स भाग रहे हैं।

सुंदर लग रही इनको असेंबल भी बहुत अच्छे तरीके से किया हुआ है एक व्हाइट कलर का जो इनका रोज़ है और रोज़ भी ऐसे लग रहा--

बहुत सारे व्हीकल्स भी खड़े हैं और जीप वगैरह भी--

ये तो कोई होटल लग रहा है और इधर जो--

नेशनल फ्लैग भी लगा हुआ इधर सुंदर लग रही है वैसे काइट्स तो सारी कलरफुल है।

हॉस्पिटल का व्यू क्या ही हम कह सकते है सुंदर होगा बट ये व्यू सुंदर लग रहा है इधर इन्होंने माक्स भी लगाए है मतलब कि ये पूरा--

नहीं स्कूल का नाम दिखाई नहीं दे रहा है वैसे ये ऐसे लग रही है गवर्मेंट स्कूल की बस है वैसे गवर्मेंट स्कूल में बस होती नहीं है पर जो भी है ये सुंदर लग रहा है वैसे अट्रैक्ट कर रहा है हमको।

इधर एक पीछे रूम भी है ये नर्सरी दिखाई दिखाई दे रही हैं हमको।

ये तो लग रहा है टेनिस का जो ग्राउंड है पर वैसे टे टेनिस तो टेबल पे खेली जाती है ये कोई होगी--

इधर प्लांट नहीं दिख रहे इधर कोट दिख रहे हैं कितने सुंदर कोट है इधर इनको ना एक मैन बेच रहा है जो--

इस गर्मी में कोरोना जैसी घातक बीमारियां फैल रही हैं हमें इससे बचाव करना चाहिए।

ताकि बीमार ना हो सके को--

ये हमारी मौत भी हो सकती है इसलिए हमें इससे बचाव करना चाहि--

इसके अंदर सारे जो पावर पॉइंट भी लगे हुए हैं और इसके अंदर बहुत सारी--